अनेक कलर के कपड़े पहने हुए हैं जैसे व्हाइट एवं ग्रीन तथा ब्लू दिखाई दे रहा है।

अपने मशीन को चला रही है।

कचड़े दान का कलर हरा कलर का है यहां पर दो व्यक्ति खड़े हैं जो मोबाइल से फोटो घीच रहे हैं।

इसके अंदर कॉफी बनाने वाला एक मशीन दिखाई दे रहा है।

जिसके ऊपर शीशे से आठ बने हुए हैं।

जो हरा एवं येलो कलर का है यहां पर बहुत सारे सामान एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया है।

इसके दीवाल में व्हाइट एवं हरा कलर से स्मोशन किया गया है।

इसके जमीन कच्ची मिट्टी से बने हुए हैं।

इसके दूर में बड़े बड़े बिल्डिंग इमारत नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक महिला एवं पुरुष रोड पर चल रहे हैं जो रोड पर टाइल्स लगे हुए हैं।

दो ब्राउन कलर की तकिये दिखाई दे रहा है।

यह एक रूम का दृश्य है।

यहां पर दो पुरुष एवं दो महिला डांन्से कर रही है।

यहां पर शैंपू बोरोप्लस तथा आटा ग्लूकोनडी सामान भी रखे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे एल्मुनियम एवं शीशे के मदद से इसके गेट बनाए गए हैं।

इसके पीछे बहुत सारे फूल से डेकोरेशन किया गया है जो ग्रीन एवं येलो कलर का दिखाई दे रहा है।

जिसके ऊपर कभर लगाया गया है।

यह एक शादी समारोह का दृश्य है।

तथा इसके साइड में टेबुल लगे हुए हैं जो वेटर लोग चाऊमीन गुपचुप--

यह एक कैफे बाइ का दृश्य है।